दिखाई दे रहा है और कोई बारिश के बुँदे दिखाई दे रहे है।

यहां है एक गैस है गैस सिलेंडर दिखाई दे रहा है और एक काली गाड़ी दिखाई दे रही है उसके पास चार पहिया दिखाई दे रहे हैं |

और पानी का पाइप भी दिखाई दे रहा है और करंट के वायर भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं |

और यहां पर एक टीवी बहुत बड़ी टीवी दिखाई टैक्सी दिखाई दे रही है एक मंडप भी दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है और यह बहुत ही अच्छा फूलों से सजाया गया है स्टेज दिखाई दे रहा है|

यहां पर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बड़ा घर भी दिखाई दे रहा है और चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी नजर आ रहे है।

यहां पर कुछ जलसा जैसा नजर आ रहा है और कुछ लोग औरतों डांस कर करते हुए नजर आ रही है |

और यहां पर सुखी घास नजर आ रही है और पानी नजर आ रहा है ये बहुत ही बड़ा जंगल जैसा दिखाई दे रहा है।

बहुत बढ़िया बहुत आदमी बैठे हुए है ओवर धो आदमी नज़र आ रहे हे ओवर स्टेज पर बहुतही नजर --

और ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे एक पिकाको दिखाई दे रहा है|